और ये एक ही लोग है ये दस बारह लोग हैं और इसमें इन्होने मशीन ला कर रखी है इसमें --

मोटरसाइकिल में चल रही है जो कि इसमें --

अब मैं इसमें बैठा के नदी क्रॉस कराई जाती है नदी पार कराई जाती है।

काफी पहाड़ो द्वारा निकल के आयी है इनमे काफी पत्थर पड़े हुए हैं इन पत्थरों में पानी टकरा के --

और ये मशीन काफी अच्छी है जो कि इनसे काफी फायदा होता है हमें।

जो मतलब अंदर ग्राउंड में जो पेड़ लगा रही हैं हर एक लड़की एक-एक पेड़ लगा रही है।

मेथिला बुक सेंटर जोकि काफी बड़ा सेण्टर है जोकि काफी बड़ी दुकान है बुकों की क्यूंकि यही से सारी किताबें खरीदी जाती हैं हर कॉलेज की।

की सामने काफी बड़ी बिल्डिंग है जोकि काफी अच्छी बनाई गयी है द्वारा और पिलर द्वारा खड़ी करके।

ये इक ईस्टीज का फोटो है। जिसमे न दूल्हे की शादी होगी और --

एक बड़ा हुआ है। मशीन लगी हुई है।

ये जानकारियां लेते हैं जो है कुछ --

काफी शानदार खुला हुआ है जोकि देखो --

गुमानी के बगल में देखिए लोग देख रहे हैं नीचे।

ये काफी अच्छी बनाई हुई है जोकि काचों द्वारा बनाई गयी है।

खेती बाड़ी है और --

जोकि यह हम देख रहे हैं हमारे सामने में दिखाई दे रही है अभी भी।